एक छोटा सा मंदिर है मंदिर में कृष्ण जी और राधे जी है का म-मूर्ति बनाया है।

एक रास्ता है। रास्ता के बगल में बड़ा सा मकान है। जिसमे ये मजलि का है। इसमें काँचे लगी है। बहार एक बिजली का खम्बा लगा हुआ है। बहुत से बोरियां रखी है।

एक बड़ा सा मेला लगा हुआ। एक मंदिरे है। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है। कुछे अभूदे लोग हैं। गासे हैं। हरा भरा है। सामने पेड़ पौधे है पीछे।

एक रास्ता है रास्ते के बगल में तीन दुकाने है दुकाने के ऊपर पोस्टर लगे हैं।

ऐक रास्ता हैं रास्ते बगल में एक छोटा सा दूकान हैं।